वहा पर तराजू दिखाई दे रहे है और वहा पर काफी सारे बायसीकल पार्क किए गए नजर आ रहे है कुछ बिल्डींग्स वहा पर दिखाई दे रहे है काफी लोग कस्टमर नजर हा रहे है आसमान भी साफ दिखाई दे रहा है।

पर काफी सारे फ़िशेस नजर हा रहे है यह एक फिश मार्केट दिखाई दे रहा है और काफी सारे यहा पर नजर हा रह है।

काफी बड़ा ग्राउंड नज़र आ रहा है काफी हरे घास वहा पे नज़र आ रही है काफी सारे वहा पे प्लेयर्स जो है वह वॉमअप करते हुए वहा नज़र आ रहे है और वहा पर काफी बड़े हरे वृक्ष नज़र आ --

मुनसीपल कॉर्पोरेशन की जो टेम्पो होती है वहा नज़र आ रही है पाल्म ट्री दिखाई दे रहे है कुछ हरे वृक्ष नज़र आ रहे है वही-वहा पर आसमान भी साफ दिखाई --

पर एक इंस्टीट्यूट नज़र आ रहा है जो गेट वह दिखाई दे रहा है और वहा पर जो रिल्लिंग है वो ब्लॅक कलर की दिख रही है शेड नज़र आ रहा है ग्रे कलर का वही डस्ट्बिन दिखाई दे रहा --

एक सुपर मार्केट नजर आ रहा है जहा पर काफी सारे अलग अलग जो प्रोडक्ट हे वो दिख रहे है जिनमे हेयर कन्डिशनर नजर आ रहे है वही पर जो वाशिंग जो मशीन की प्रोडक्ट होते है वो नजर आ रहे है वही वहा पर जो --

यहा पर जिमनासीयम नजर आ रहा है जिमनासीयम मे इक्विपमेंट् हे काफी सारे दिखाई दे रहे है और यहा पर जो दीवार है और जो सीलिंग नजर आ रही है वह दिखाई दे रही है। कुछ --

नैशन नजर आ रहा है जहा पर काफी सारे जिम्नैज़ीअम इक्विप्मन्ट वहा पर दिखाई दे रहे है और अमुक तौर पर वहा पर जो ट्रेडमिल होते है वह नजर आ रहे है साइकिलिंग वहा पर दिखाई दे रहे हे इक्विप्मन्ट और वहा पर बालून्स नजर आ रहे हे जो सफेद है और कुछ --

पेड़वा दिखाई दे रहा है। हरे रंग का और वह पर काफी बड़े हरे वृक्ष नजर आ रहे है और कुछ लैंप लाइट्स वहा पे दोनो साईड में लगे हुए दिख रहे है। वहीं वहा पर अंदर मे कार्यालय की बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

एक बिल्डिंग नजर आ रही है यह किसी होटल की या किसी इंस्टिट्यूट की बिल्डिंग नजर आ रही है यह हरे रंग की दीवार दिखती है विंडोज नजर आ रहे है जो कांच के दिखाई दे --

लेग वर्काउट का है वो वर्काउट के लिए वहा रखे हुए दिख रहे है और काले रंग का लाइटस लगी हुई दिख रही है।

क्रीम कलर की नजर आ रही है विंडोज़ दिखाई दे रहे है जो कांच के नजर आ रहे है डोर्स दिखाई दे रहे है वही वहां पर एक व्यक्ति वहां पर वाश बेसिन के पास नजर आ रहे है जो हाथ धोते हुए दिख रहे है।